इस फोटो में मुझे घर दिखाई दे रहें हैं।

इस फोटो में मुझे रेता गिट्टी दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे घर दिखाइ दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे पुरुष दिखाई दे रहा--

इस फोटो में मुझे साइकिल और बाइक दिखाई दे रहीं हैं।

इस फोटो में मुझे भारत का झंडा दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे गाय दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे टब दिखाई दे रहे हैं।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

इस फोटो में मुझे छोटे-छोटे कमले दिखाई दे रहें हैं।

इस फोटो में मुझे बहता हुआ झरना दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो में मुझे पुराना किला दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे कुछ रोड दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे बड़ा क्रॉस दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे रंग बिरंगी लाइटें दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे डम दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो में मुझे नदी दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में मुझे मछली मार्केट दिखाई दे रहा है।